क्योंकि ये एक डेंटिस्ट मशीन है जो काफी बड़ी है इसमें आप--

इस फोटो में आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग से कुछ दिखाई दे रही हैं जैसे स्कूलों की या कॉलेज की बिल्डिंग लग रही है देखने में और साइड में ये एक--

बाहर आप देख सकते हैं गमले वगैराह जिनमें--

देख सकते इसमें एक ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है ए_सी लगे हुए हैं फैन लगे हुए हैं और काफी ज्यादा साफ सफाई का ध्यान--

साइड में एक कंपनी है बाउंड्री की हुई है इसकी और टीने वगैरह दिखाई दे रही है।

तो इस फोटो में हम देख सके हैं पिछली तरफ एक बड़ा कॉलेज है या बिल्डिंग्स --

सजाया हुआ है तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और केले के--

कवर ढका हुआ है और एक पोस्टर रखा है मधु गारमेंट्स होलसेल की--

इस फोटो में ये एक जिम का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर एक--

दिखाई दे रहा है बाउंड्री बाउंड्री के साइड में--

सामने खड़ा हुआ है और एक आदमी है जो ए_टी_एम के अंदर जा रहा है।

और बीच में से रास्ता बनाया हुआ है पट्टियों से इसके ऊपर आ--